मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार हाल ही में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ
भारत सहित दुनिया के 71 देशों ने इसमें हिस्सा लिया
जब इतना बड़ा आयोजन हो विश्व भर से आये हज़ारों खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हों कल्पना कर सकतें हैं कैसा माहौल होगा जोश जज़्बा उत्साह आशाएँ आकांक्षाएँ कुछ कर दिखाने का संकल्प जब इस तरह का माहौल हो तो कौन इससे अपने आपको अलग रख सकता है
ये एक ऐसा समय था जब देश भर में लोग रोज़ सोचते थे कि आज कौनकौन से खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे
भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा हम कितने मेडल जीतेंगे और बहुत स्वाभाविक भी था
हमारे खिलाडियों ने भी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और एककेबाद एक मेडल जीतते ही चले गए
चाहे शूटिंग हो रेस्टलिंग हो वेटलिफ्टिंग हो टेबल टेनिस हो या बैडमिंटन हो भारत ने रेकॉर्ड प्रदर्शन किया
26 गोल्ड 20 सिल्वर 20 ब्रोंज भारत ने क़रीबक़रीब कुल 66 पदक जीते
हर भारतीय को ये सफ़लता गर्व दिलाती है
पदक जीतना खिलाड़ियों के लिए गर्व और खुशी की बात होती ही है
ये पूरे देश के लिए सभी देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का पर्व होता है
मैच समाप्त होने के बाद जब पदक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एथलीट वहाँ पदक के साथ खड़े होते हैं तिरंगा झंडा लपेटे होते हैं राष्ट्रगान की धुन बजती है और वो जो भाव होता है संतोष और खुशी का गौरव का मानसम्मान का अपने आप में कुछ ख़ास होता है विशेष होता है
तनमन को झकझोरने वाला होता है
उमंग और उर्मि से भरा हुआ होता है
हम सब एक भाव से भर जाते हैं
शायद उस भावों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएँगे
लेकिन मैंने इन खिलाड़ियों से जो सुना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ
मुझे तो गर्व होता है आपको भी गर्व होगा
मैं मनिका बत्रा जो कॉमनवेल्थ में चार मेडल लायी हूँ
दो गोल्ड एक सिल्वर एक ब्रोंज
मन की बात प्रोग्राम सुनने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार इंडिया में टेबल टेनिस इतना पॉपुलर हो रहा है
हाँ मैंने अपना बेस्ट टेबल टेनिस खेला होगा
पूरे लाइफ का बेस्ट टेबल टेनिस खेला होगा
जो उससे पहले मैंने प्रैक्टिस करी है उसके बारे में मैं बताऊँगी कि मैंने बहुत अपने कोच संदीप सिर के साथ प्रैक्टिस करी है
कॉमनवेल्थ से पहले जो हमारे कैम्प्स थे पोर्तुगल में हमें टूर्नामेंट्स भेजा गवर्नमेंट ने और मैं थांक यू गवर्नमेंट को करती हूँ क्योंकि उन्होंने इतने सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर दिए हमें
यंग जनरेशन को बस एक मेसेज दूंगी कभी गिव यूपी मत करो
एक्सप्लोर यूरसेल्फ
मैं पी गुरुराज मन की बात प्रोग्राम सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ
2018 कॉमनवेल्थ गेम मेरा ये मेडल जीतने का सपना था
मैं पहली बार पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले इंडिया को मेडल दे के मैं बहुत खुश हूँ
ये मेडल मेरा गाँव कुन्दापुरा कुंदापुर और मेरा स्टेट कर्नाटक और मेरा कंट्री को ये डेडिकेट करता हूँ
मीराबाई चानू मैंने 21st कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था
तो इसी में मुझे बहुत खुशी हुआ
मेरी एक ड्रीम थी इंडिया के लिए और मणिपुर के लिए एक अच्छा वाला प्लेयर्स बनने के लिए तो मैंने सारी मूवी में देखती है
जैसे कि मणिपुर का मेरी दीदी और वो सब कुछ देखने के बाद मुझे भी ऐसे सोचा था कि इंडिया के लिए मणिपुर के लिए अच्छा वाला प्लेयर बनना चाहती हूँ
ये मेरा सक्सेसफुल होने के कारण मेरा डिसिप्लिन भी है और सिंसरिटी डेडिकेशन एंड आ हार्ड वर्क
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन तो था ही साथ ही यह विशेष भी था
विशेष इसलिए कि इस बार कई चीज़ें थी जो पहली बार हुई
क्या आप जानते हैं कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ़ से जितने रेस्टलर्स थे सब के सब मेडल जीत के आये हैं
मनिका बत्रा ने जितने भी इवेंट भी कॉम्पीट किया सभी में मेडल जीता
वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंडिविड्यूअल टेबल टेनिस में भारत को गोल्ड दिलाया है
भारत को सबसे ज़्यादा मेडल शूटिंग में मिले
15 वर्षीय भारतीय शूटर अनीश भानवाला कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ़ से गोल्ड मेडल जीतने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी बने
सचिन चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के लिए एकमात्र भारतीय पारा पावरलिफ्टर हैं
इस बार के गेम्स विशेष इसलिए भी थे कि अधिकतर मेडलिस्ट महिला एथलीट थीं
स्क्वाश हो बॉक्सिंग हो वेटलिफ्टिंग हो शूटिंग हो महिला खिलाड़ियों ने कमाल करके दिखाया
बैडमिंटन में तो फाइनल मुकाबला भारत की ही दो खिलाड़ियों साइना नेहवाल और पीवी सिन्धु के बीच हुआ
सभी उत्साहित थे कि मुकाबला तो है लेकिन दोनों मेडल भारत को ही मिलेंगे पूरे देश ने देखा
मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लगा
गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट्स देश के अलगअलग भागों से छोटेछोटे शहरों से आये हैं
अनेक बाधाओं परेशानियों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आज उन्होंने जो मुक़ाम हासिल किया है वे जिन लक्ष्यों तक पहुँचे हैं उनकी इस जीवनयात्रा में चाहे उनके मातापिता हों उनके गार्डियन हो कोच हो सपोर्ट स्टाफ हो स्कूल हो स्कूल के शिक्षक हों स्कूल का वातावरण हो सभी का योगदान है
उनके दोस्तों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका हौंसला बुलन्द रखा
मैं उन खिलाड़ियों के साथसाथ उन सबको भी ढ़ेरों बधाइयाँ देता हूँ शुभकामनाएँ देता हूँ
पिछले महीने मन की बात के दौरान मैंने देशवासियों से ख़ासकरके हमारे युवकों से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था आइये फिट इंडिया से जुड़िये फिट इंडिया को लीड कीजिये
और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं
बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है पत्र भेजे हैं सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की हैं
एक सज्जन श्रीमान् शशिकान्त भोंसले ने स्विमिंग पूल की अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है
माय वेपन इस माय बॉडी माय एलिमेंट इस वाटर माय वर्ल्ड इस स्विमिंग
रूमा देवनाथ लिखती हैं मॉर्निंग वाल्क से मैं ख़ुद को हैपी और हेल्थी महसूस करती हूँ
और वो आगे कहती हैं फोर मे फिटनेस कोम्स विथ आ स्माइल्स एंड वे शोल्ड स्माइल व्हेन वे एआरई हैपी
देवनाथ जी इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हैपीनेस ही फिटनेस है
धवल प्रजापति ने ट्रेकिंग की अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है मेरे लिए ट्रैवेलिंग और ट्रेकिंग ही फिट इंडिया है
यह देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि कई जानीमानी हस्तियाँ भी बड़े रोचक ढ़ंग से फिट इंडिया के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित कर रही हैं
सिनेकलाकार अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है
मैंने भी उसे देखा है और आप सब भी ज़रूर देखेंगे इसमें वो वुडेन बीड्स के साथ एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक्सरसाइज पीठ और पेट की मांसपेशियों के लिए काफ़ी लाभदायक है
एक और उनका वीडियो भी प्रचलित हो गया है जिसमें वो लोगों के साथ वॉलीबॉल पर हाथ आज़मा रहे हैं
बहुत से और युवाओं ने भी फिट इंडिया इफोर्ट्स के साथ जुड़कर के अपने अनुभवों को शेयर किया है
मैं समझता हूँ कि इस तरह के आन्दोलन हम सभी के लिए पूरे देश के लिए बेहद फायदेमंद हैं
और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा बिना ख़र्चे का फिट इंडिया के मूवमेंट का नाम है योग
फिट इंडिया अभियान में योग की विशेष महिमा है और आप भी तैयारी में लग गए होंगे
21 जून अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का माहात्म्य तो अब पूरे विश्व ने स्वीकार किया है
आप भी अभी से तैयारी कीजिये
अकेले नहीं आपका शहर आपका गाँव आपका इलाक़ा आपके स्कूल आपके कॉलेज हर कोई किसी भी उम्र का पुरुष हो स्त्री हो योग से जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिये
सम्पूर्ण शारीरिक विकास के लिए मानसिक विकास के लिए मानसिक संतुलन के लिए योग का क्या उपयोग है अब हिन्दुस्तान में और दुनिया में बताना नहीं पड़ता है और आपने देखा होगा कि एक एनिमेटेड वीडियो जिसमें मुझे दिखाया गया है वो इन दिनों काफ़ी प्रचलित हो रहा है
एनिमेशन वालों को मैं इसलिए भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत बारीक़ी से जो काम एक टीचर कर सकता है वो एनिमेशन से हो रहा है
आपको भी ज़रूर इसका लाभ मिलेगा
मेरे नौजवान साथियो आप तो अब एक्साम एक्साम एक्साम के चक्कर से निकलकर के अब छुट्टियों की चिंता में लगे होंगे
छुट्टियाँ कैसे मनाना कहाँ जाना सोचते होंगे
मैं आज आपको एक नये काम के लिए निमंत्रण देने के लिए बात करना चाहता हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे नौज़वान इन दिनों कुछनकुछ नया सीखने के लिए भी अपना समय बिताते हैं
समर इंटर्नशिप का माहात्म्य बढ़ता चला जा रहा है और नौज़वान भी उसकी तलाश करते रहते हैं और वैसे भी इंटर्नशिप अपने आप में एक नया अनुभव होता है
चार दीवारी के बाहर कागज़कलम से कंप्यूटर से दूर ज़िन्दगी को नए तरीके से जीने का अनुभव करने का अवसर मिलता है
मेरे नौज़वान साथियो एक विशेष इंटर्नशिप के लिए मैं आज आपसे आग्रह कर रहा हूँ
भारत सरकार के तीन मंत्रालय स्पोर्ट्स हो एचआरडी हो ड्रिंकिंग वाटर का डिपार्टमेंट हो सरकार के तीनचार मंत्रालय ने मिलकर के एक स्वछ भारत समर इंटर्नशिप 2018 ये लॉन्च किया है
कॉलेज के छात्रछात्राएँ एनसीसी के नौज़वान एनएसएस के नौज़वान नेहरु युवा केंद्र के नौज़वान जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए देश के लिए और कुछ सीखना चाहते हैं समाज के बदलाव में जो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं निमित्त बनना चाहते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के समाज में कुछनकुछ कर गुज़रने का इरादा है उन सब के लिए अवसर है और इससे स्वच्छता को भी बल मिलेगा और जब हम 2 अक्तूबर से महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनायेंगे उसके पहले हमें कुछ करने का संतोष मिलेगा और मैं ये भी बता दूँ कि जो उत्तमसेउत्तम इंटर्न्स होंगे जो कॉलेज में उत्तम काम किया होगा विश्वविद्यालय में किया होगा ऐसे सब को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाएँगे
इस इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रत्येक इंटर्न को स्वच्छ भारत मिशन द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जायेगा
इतना ही नहीं जो इंटर्न इसे अच्छे से पूरा करेंगे यूजीसी उन्हें दो क्रेडिट पॉइंट भी देगा
मैं छात्रों को छात्राओं को नौज़वानों को फिर एक बार निमंत्रण देता हूँ इंटर्नशिप के लिए आप इसका लाभ उठाएँ
आप माइगोव पर जाकर स्वछ भारत समर इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं
मैं आशा करता हूँ कि हमारे युवा स्वच्छता के इस आन्दोलन को और आगे बढ़ाएँगे
आपके प्रयासों के बारे में जानने के लिए मैं भी इच्छुक हूँ
आप अपनी जानकारियाँ ज़रुर भेजिए स्टोरी भेजिए फोटो भेजिए वीडियो भेजिए
आइये एक नए अनुभव के लिए इन छुट्टियों को सीखने का अवसर बना दें
मेरे प्यारे देशवासियो जब भी मौका मिलता है तो दूरदर्शन पर गुड न्यूज इंडिया इस कार्यक्रम को जरुर देखता हूँ और मैं तो देशवासियों से भी अपील करूँगा कि गुड न्यूज इंडिया भी हमें देखना चाहिए और वहाँ पर पता चलता है कि हमारे देश के किसकिस कोने में कितनेकितने लोग किसकिस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं अच्छी बातें हो रही हैं
मैंने पिछले दिनों देखा दिल्ली के ऐसे युवाओं की कहानी दिखा रहे थे जो ग़रीब बच्चों की पढ़ाई के लिए निस्वार्थ भाव से जुटे हुए हैं
इन नौज़वानों के समूह ने दिल्ली में स्ट्रीट चाइल्ड को और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है
शुरुआत में तो उन्होंने सड़कों पर भीख माँगने वाले या छोटेमोटे काम करने वाले बच्चों की हालत ने उनको ऐसा झक़झोर दिया कि वो इस रचनात्मक काम के अंदर खप गए
दिल्ली की गीता कालोनी के पास की झुग्गियों में 15 बच्चों से प्रारंभ हुआ ये अभियान आज राजधानी के 12 स्थानों पर 2 हज़ार बच्चों से जुड़ चुका है इस अभियान से जुड़े युवा शिक्षक अपनी व्यस्त दिनचर्या से 2 घंटे का फ्री टाइम निकालकर सामाजिक बदलाव के इस भगीरथ प्रयास में जुटे हुए हैं
भाइयोबहनो उसी प्रकार से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के कुछ किसान देशभर के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं
उन्होंने संगठित प्रयासों से न सिर्फ़ अपना बल्कि अपने क्षेत्र का भी भाग्य बदल डाला
उत्तराखंड के बागेश्वर में मुख्य रूप से मंडवा चौलाई मक्का या जौ की फसल होती है
पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था लेकिन कपकोट तहसील के किसानों ने इन फसलों को सीधे बाज़ार में बेचकर घाटा सहने के बजाये उन्होंने मूल्य वृद्धि का रास्ता अपनाया वैल्यू एडिशन का रास्ता अपनाया
उन्होंने क्या किया इन्हीं खेत पैदावार में से बिस्किट बनाना शुरू किया और बिस्किट बेचना शुरू किया
उस इलाके में तो ये बड़ी पक्की मान्यता है कि इरोन रिच है और इरोन रिच लौहतत्व से युक्त ये बिस्किट गर्भवती महिलाओं के लिए तो एक प्रकार से बहुत उपयोगी होते हैं
इन किसानों ने मुनार गाँव में एक सहकारी संस्था बनाई है और वहाँ बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खोल ली है
किसानों की हिम्मत देखकर प्रशासन ने भी इसे राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जोड़ दिया है
ये बिस्किट अब न सिर्फ बागेश्वर ज़िले के लगभग पचास आंगनवाड़ी केन्द्रों में बल्कि अल्मोड़ा और कौसानी तक पहुँचाये जा रहे हैं
किसानों की मेहनत से संस्था का सालाना टर्नओवर न केवल 10 से 15 लाख रूपये तक पहुँच चुका है बल्कि 900 से अधिक परिवारों को रोज़गार के अवसर मिलने से ज़िले से होने वाला पलायन भी रुकना शुरू हुआ है
मेरे प्यारे देशवासियो जब हम सुनते हैं कि भविष्य में दुनियाँ में पानी को लेकर के युद्ध होने वाले हैं
हर कोई ये बात बोलता है लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेवारी है क्या क्या हमें नहीं लगता है कि जलसंरक्षण ये सामाजिक जिम्मेवारी होनी चाहिए हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए
बारिश की एकएक बूँद हम कैसे बचाएँ और हम में से सबको पता है कि हम भारतीयों के दिल में जलसंरक्षण ये कोई नया विषय नहीं है किताबों का विषय नहीं है भाषा का विषय नहीं रहा
सदियों से हमारे पूर्वजों ने इसे जी करके दिखाया है
एकएक बूँद पानी के माहात्म्य को उन्होंने प्राथमिकता दी है
उन्होंने ऐसे नएनए उपाए ढूंढें है कि पानी की एकएक बूँद को कैसे बचाया जाए आप में से शायद जिन लोगों को तमिलनाडु में जाने का अवसर मिलता होगा तो तमिलनाडु में कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ मंदिरों में सिंचाई व्यवस्था जलसंरक्षण व्यवस्था सूखाप्रबंधन इसके बड़ेबड़े शिलालेख मंदिरों में लिखे गए हैं
मनारकोविल चिरान महादेवी कोविलपट्टी या पुदुकोट्टई पुदुकोट्टई हो सब जगह पर बड़ेबड़े शिलालेख आपको दिखाई देंगे
आज भी विभिन्न बावड़ियाँ स्टेपवेल्स पर्यटन स्थल के रूप में तो परिचित हैं लेकिन ये न भूलें कि ये जलसंग्रह के बड़े हमारे पूर्वजों के अभियान के जीतेजागते सबूत हैं
गुजरात में अडालज और पाटन की रानी की वावबावड़ी जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिते है इनकी भव्यता देखते ही बनती है एक प्रकार से बावड़ियाँ जल मंदिर ही तो हैं
अगर आप राजस्थान जाएँ तो आप जोधपुर में चाँद बावड़ी जरुर जाइएगा
ये भारत की सबसे बड़ी और खूबसूरत बावड़ी में से एक है और सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि वह उस धरती पर है जहाँ पानी की क़िल्लत रहती है
एप्रिल मय जुने जुली ये समय ऐसा होता है कि वर्षा के पानी को संग्रह करने का उत्तम अवसर होता है और अगर हम एडवांस में जितनी तैयारियाँ करें उतना हमें फायदा मिलता है
मनरेगा का बजेट भी इस जलसंरक्षण के लिए काम आता है
पिछले तीन वर्षों के दौरान जलसंरक्षण और जलप्रबंधन की दिशा में हर किसी ने अपनेअपने तरीके से प्रयास किये हैं
हर साल मनरेगा बजेट से हटकर जलसंरक्षण और जलप्रबंधन पर औसतन 32 हज़ार करोड़ रूपए खर्च किये गए हैं
201718 की बात करें तो मैं 64 हज़ार करोड़ रूपए के कुल व्यय का 55 यानी क़रीबक़रीब 35 हज़ार करोड़ रूपए जलसंरक्षण जैसे कामों पर खर्च किये गए हैं
पिछले तीन वर्षों के दौरान इस तरह के जलसंरक्षण और जलप्रबंधन उपायों के माध्यम से क़रीबक़रीब 150 लाख हैक्टेयर भूमि को अधिक मात्रा में लाभ मिला है
जलसंरक्षण और जलप्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मनरेगा में धनराशि मिलती है कुछ लोगों ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है
केरल में कुट्टूमपेरूर कुट्टेमपेरूर उस नदी पर 7 हज़ार मनरेगा के काम करने वाले लोगों ने 70 दिनों तक कड़ी मेहनत करके उस नदी को पुनर्जीवित कर दिया
गंगा और यमुना पानी से भरी हुई नदियाँ हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में कई और इलाके भी हैं जैसे फतेहपुर ज़िला का ससुर खदेरी नाम की दो छोटी नदियाँ सूख गयीं
ज़िला प्रशासन ने मनरेगा के तहत बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी और जलसंरक्षण के कार्य का बीड़ा उठाया
क़रीबक़रीब 4045 गाँवों के लोगों की मदद से इस ससुर खदेरी नदी जो सूख चुकी थी उसको पुनर्जीवित किया
पशु हो पक्षी हो किसान हो खेती हो गाँव हो कितनी बड़ी आशीर्वाद भरी ये सफलता है
मैं यही कहूँगा कि फिर एक बार एप्रिल मय जुने जुली हमारे सामने हैं जलसंचय जलसंरक्षण के लिए हम भी कुछ ज़िम्मेवारी उठाएँ हम भी कुछ योजना बनाएँ हम भी कुछ करके दिखाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो जब मन की बात होती है तो मुझे चारों तरफ से सन्देश आते हैं चिट्ठियाँ आती हैं फ़ोन आते हैं
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परग़ना ज़िले के देवीतोला गाँव के आयन कुमार बनर्जी ने माइगोव पर अपने कमेंट में लिखा है हम हर वर्ष रबीन्द्र जयंती मनाते हैं लेकिन कई लोग नोबेल पुरस्कार विजेता रबीन्द्रनाथ टैगोर की पीसफुली ब्यूटीफुली और इंटीग्रिटी के साथ जीने की फिलॉसफी के बारे में जानते ही नहीं हैं
कृपया मन की बात कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा करें ताकि लोग उसके बारे में जान सकें
मैं आयन जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मन की बात के सभी साथियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया
गुरुदेव टैगोर ज्ञान और विवेक से सम्पूर्ण व्यक्तित्व वाले थे जिनकी लेखनी ने हर किसी पर अपनी अमिट छाप छोड़ी
रबीन्द्रनाथ एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे बहुआयामी व्यक्तित्व थे लेकिन उनके भीतर एक शिक्षक हर पल अनुभव कर सकते हैं
उन्होंने गीतांजलि में लिखा है हे व्हो हस थे नाउलेज हस थे रिस्पांसिबिलिटी टो इम्पार्ट इत टो थे स्टूडेंट्स अर्थात जिसके पास ज्ञान है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह उसे जिज्ञासुओं के साथ बाँटे
मैं बांग्ला भाषा तो नहीं जानता हूँ लेकिन जब छोटा था मुझे बहुत जल्दी उठने की आदत रही बचपन से और पूर्वी हिंदुस्तान में रेडियो जल्दी शुरू होता है पश्चिम हिंदुस्तान में देर से शुरू होता है तो सुबह मोटामोटा मुझे अंदाज़ है शायद 530 बजे रबीन्द्र संगीत प्रारंभ होता था रेडियो पर और मुझे उसकी आदत थी
भाषा तो नहीं जानता था सुबह जल्दी उठ करके रेडियो पर रबीन्द्र संगीत सुनने की मेरी आदत हो गई थी और जब आनंदलोके और आगुनेर पोरोशमोनी ये कविताएँ सुनने का जब अवसर मिलता था मन को बड़ी ही चेतना मिलती थी
आपको भी रबीन्द्र संगीत ने उनकी कविताओं ने ज़रुर प्रभावित किया होगा
मैं रबीन्द्र नाथ ठाकुर को आदरपूर्वक अंजलि देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ ही दिनों में रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है
विश्वभर में रमज़ान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है
रोज़े का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है
जब वो ख़ुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है
पैगम्बर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके सन्देश को याद करने का यह अवसर है
उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है
एक बार एक इंसान ने पैगम्बर साहब से पूछा इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है पैगम्बर साहब ने कहा किसी गरीब और ज़रूरतमंद को खिलाना और सभी से सदभाव से मिलना चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो
पैगम्बर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे
उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था
वह कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है
पैगम्बर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज़ आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें इसीलिए रमज़ान में दान का भी काफी महत्व है
लोग इस पवित्र माह में ज़रूरतमंदों को दान देते हैं
पैगम्बर मोहम्मद साहब का मानना था कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है न कि धनदौलत से
मैं सभी देशवासियों को रमज़ान के पवित्र महीने की शुभकामनाएँ देता हूँ और मुझे आशा है यह अवसर लोगों को शांति और सदभावना के उनके संदेशों पर चलने की प्रेरणा देगा
मेरे प्यारे देशवासियो बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष दिवस है
हमें गर्व होना चाहिए कि भारत करुणा सेवा और त्याग की शक्ति दिखाने वाले महामानव भगवान बुद्ध की धरती है जिन्होंने विश्वभर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया
यह बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करने का संकल्प करने का और चलने का हम सबके दायित्व को पुनस्मरण कराता है
भगवान बुद्ध समानता शांति सदभाव और भाईचारे की प्रेरणा शक्ति है
यह वैसे मानवीय मूल्य हैं जिनकी आवश्यकता आज के विश्व में सर्वाधिक है
बाबा साहेब डॉ आम्बेडकर जोर देकर कहते हैं कि उनकी सोशल फिलॉसफी में भगवान बुद्ध की बड़ी प्रेरणा रही है
उन्होंने कहा था माय सोशल फिलॉसफी मय बीई सैद टो बीई एनश्राइंड इन थ्री words लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटरनिटी
माय फिलॉसफी हस रूट्स इन रिलिजन एंड नोट इन पॉलिटिकल साइंस
आई हेव डिराइव्ड थेम फ्रॉम थे टीचिंग ओएफ माय मास्टर थे बुद्धा
बाबा साहेब ने सविंधान के माध्यम से दलित हो पीड़ित हो शोषित हो वंचित हो हाशिये पर खड़े करोड़ों लोगों को सशक्त बनाया
करुणा का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता
लोगों की पीड़ा के लिए यह करुणा भगवान बुद्ध के सबसे महान गुणों में से एक थी
ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों की यात्रा करते रहते थे
वह अपने साथ भगवान बुद्ध के समृद्ध विचारों को ले करके जाते थे और यह सभी काल में होता रहा है
समूचे एशिया में भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ हमें विरासत में मिली हैं
वह हमें अनेक एशियाई देशों जैसे चीन जापान कोरिया थाईलैंड कम्बोडिया म्यांमार कई अनेक देश वहाँ बुद्ध की इस परंपरा बुद्ध की शिक्षा जड़ों में जुड़ी हुई हैं और यही कारण है कि हम बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं जो दक्षिणपूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण स्थानों को भारत के खास बौद्ध स्थलों के साथ जोड़ता है
मुझे इस बात की भी अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत सरकार कई बौद्ध मंदिरों के पुनरुद्धार कार्यों में भागीदार है
इसमें म्यांमार में बागान में सदियों पुराना वैभवशाली आनंद मंदिर भी सम्मलित है
आज विश्व में हर जगह टकराव और मानवीय पीड़ा देखने को मिलती है
भगवान बुद्ध की शिक्षा घृणा को दया से मिटाने की राह दिखाती है
मैं दुनिया भर में फैले हुए भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले करुणा के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले सबको बुद्ध पूर्णिमा की मंगलमयी कामना करता हूँ
भगवान बुद्ध से पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ ताकि हम उनकी शिक्षा पर आधारित एक शांतिपूर्ण और करुणा से भरे विश्व का निर्माण करने में अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकें
आज जब हम भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं
आपने लॉगहिंग बुद्धा की मूर्तियों के बारे में सुना होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि लॉगहिंग बुद्धा गुड लक लाते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्माइलिंग बुद्धा भारत के रक्षा इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना से भी जुड़ी हुई है
अब आप सोचते रहे होंगे कि स्माइलिंग बुद्धा और भारत की सैन्यशक्ति के बीच क्या संबंध है आपको याद होगा आज से 20 वर्ष पहले 11 मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था और उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था
विश्वभर में फैले हुए भारतीय समुदाय में नया आत्मविश्वास उजाग़र हुआ था
वह दिन था बुद्ध पूर्णिमा का
11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था
उसे 20 वर्ष हो रहे हैं और ये परीक्षण भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था
भारत का परीक्षण सफल रहा और एक तरह से कहें तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अपनी ताक़त का प्रदर्शन किया था
हम कह सकते हैं कि वो दिन भारत के इतिहास में उसकी सैन्यशक्ति के प्रदर्शन के रूप में अंकित है
भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिखाया है इनर स्ट्रेंग्थ अंतर्मन की शक्ति शांति के लिए आवश्यक है
इसी तरह जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं तो आप सब के साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं
मई 1998 का महीना देश के लिए सिर्फ़ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इस महीने में परमाणु परीक्षण हुए बल्कि वो जिस तरह से किए गए थे वह महत्वपूर्ण है
इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञनिकों की भूमि है और एक मज़बूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊँचाइयों को हासिल कर सकता है
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्र दिया था जयजवान जयकिसान जयविज्ञान आज जब हम 11 मई 1998 उसका 20वाँ वर्ष मनाने जा रहे हैं तब भारत की शक्ति के लिए अटल जी ने जो जयविज्ञान का हमें मंत्र दिया है उसे आत्मसात करते हुए आधुनिक भारत बनाने के लिए शक्तिशाली भारत बनाने के लिए समर्थ भारत बनाने के लिए हर युवा योगदान देने का संकल्प करे
अपने सामर्थ्य को भारत के सामर्थ्य का हिस्सा बनाएँ
देखतेहीदेखते जिस यात्रा को अटल जी ने प्रारंभ किया था उसे आगे बढ़ाने का एक नया आनंद नया संतोष हम भी प्राप्त कर पाएँगे
मेरे प्यारे देशवासियो फिर मन की बात में मिलेंगे तब और बातें करेंगे
बहुतबहुत धन्यवाद